यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं कोई फंक्शन हो रहा है या पेड़ लगाने का योजना चल रहा है पीठ पे बैग लटकाया हुआ है।

दुकान है नाई के दुकान में नाई बाल काट रहे हैं एक आदमी बैठे हैं दाड़ी बढ़ाए है ।

कलरफुल कपड़े पहने हुए है फाइल साथ में रखे हुए हैं बहुत सारा महिलाएं हैं अ पुरुष भी है बल्ब लगा हुआ है ऊपर आसमान दिख रहा है दूर-दूर तक पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है देखने में अच्छा लग रहा है।